बराबर में और भी वस्तुएं रखी हुई है।

यह तस्वीर शिवम कंप्यूटर्स नामक एक दुकान का अंदरूनी दृश्य दिखाती है।

यहां पर एक लकड़ी का रैक है।

जहां पर अधिक मात्रा में साइकल दिखाई दे रही है।

तथा मां शारदे की प्रतिमा भी सजाई है।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

सामने एक चप्पल व जूतों की दुकान है।

दो दुकानों की शटर लाल रंग की है तथा एक दुकान की शटर ग्रे कलर की--

यह दृश्य किसी छोटे रेस्टोरेंट या फिर किसी ढाबे का है।

तथा काउंटर में अनेक प्रकार की घड़ियां हैं।

जहां पर दो तट दिखाई दे रहे हैं।

सेफ के चारों ओर सफेद रंग की बॉर्डर है तथा एक ऐ_सी भी लगी हुई है।

यह दृश्य शामली जिले के किसी पुस्तकालय का है।